यहाँ बहुत सारे मोटर साइकिल है जो की अंदर में रखे हुए है और दिखने में बहुत अच्छे-अच्छे है मोटर साइकिल है जो की कीमती दाम का भी है जादे दाम का है और इसमें एना भी लगा हुआ है यहाँ पे जो फोटो दिया गया मोटर साइकिल का लगा हुआ है जो की दिखने में बहुत अच्छे है।

और यहाँ पर जो है अम्म लोग भी हैं। जो कि रोड भी है। यहाँ पे जो है बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। पिलर विलर बिजली का भी है जो कि दिखने में बहुत मस्त है और हरियाली भी है यहाँ पे जो दिखने मे बहुत अच्छे लग रहे हैं।

यहाँ पर एक घर है घर मे टाइल्स और पत्थर लगाई हुई है दिखने मे बहुत अच्छा लग रही है यहाँ पे बहुत सारे क्रीम है जो की दिखने मे बहुत अच्छे लग रहे है यहाँ पर सफाई करने वाला ब्रश है बड़ा-सा फुलजड़ी जैसा जो की दिखने मे बहुत अच्छा है।

जोहे पेड़ पौधे लगे हुए है जोकि रोड भी है और रोड के साइड में पेड़ पौधे लगे हुए है और दिखने में हरियाली लग रही है यहाँ पे को आदमी भी है जोकि खेल कूद रहे है यहाँ पे घर है जोकी घर के साइड साइड म-- काफी लम्बे है |

और कंट्रीब्यूट किया हुआ है लाल हरे रंग का और घर भी है जो की घर दिखने में बहुत अच्छे लग रहे है और दिखने में बहुत बड़ा घर है।

यहाँ पे एक रोड है और इ रोड पे जो है एक चार चक्का है जो की चार चक्का के ऊपर एक गणेश भगवान का मूर्ति है जो की दिखने में बहुत अच्छे है यहां पे बिजली का खंभा भी है जो की दिखने मे बहुत अच्छे लग रहे है यहां पे रोड है।